और दीवाल का कलर व्हाइट है व्हाइट और ब्लू है।

इसमें कुछ ल लड़कियां डांस कर रही हैं।

और इसके बगल में पेड़ पौधे लगे हैं और एक लड़की का हाथ भी दिख रहा है।

कार एक गैराज या सर्विस सेंटर में खड़ी है।

ये तस्वीर मेट्रो ट्रेन की है।

जहां पे मां चंचला लिखा हुआ है।

ये तस्वीर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित दौलत खाना इतहा खाना--

और यह इसके पीछे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर किसी पार्क की है।

स्टाल के ऊपर मेनू बोर्ड लगे हैं जिन पर व्यंजन और उनकी कीमतें लिखी हुई है।

कुछ कर्मचारी खाना तैयार कर रहे हैं।

और तस्वी अह डेस्क पर कुछ पेपर रखे हुए हैं।

जो है पार्क में बहुत से पेड़ लगे हुए हैं और पीछे एक झरना है।

मछली का रंग भूरा या मटमैला है।

यह तस्वीर जामा मस्जिद दिल्ली के अंदरूनी हिस्से को दिखाती है।

मस्जिद में सफेद पत्थर के खंभे और धनुषाकार छते हैं।

कॉफ़ी के साथ कुछ नैपकिन भी रखे हुए हैं।

एक चम्मच भी ट्रे पर रखा हुआ है।

वे कपड़े बुनने के लिए एक परंपरिक कर्चे का उपयोग कर रहे हैं।

कार्यशाला में लकड़ी का ढांचा और कुछ धागे उपकरण भी दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर किसी जिम की लग रही है।

और वहां पे कुछ जिम का समान भी पड़ा हुआ है।

और उसका मुंह बंद है वो पीली टिशल्ट पहने हुए हैं।

सड़क के किनारे एक कंक्रीट का अवरोधक है जो सफेद और भूरे रंग का--

के पीछे एक पार्क है जिसमें हरे रंग की घास और पेड़ हैं।

यहां पर सिंहासन में दो लोग बैठे हुए हैं।

नर्सरी में हरे लाल और र और पीले रंगों के पौधों की विभिन्नता है जो इसे रंगीन आर्कषन बनाती है।

इसमें प्रतीक्षालय में कुर्सियां और कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे--

ये तस्वीर लखनऊ के फिनिक्स यूनाइटेड मॉल या फिनिक्स मॉल की --

लाइब्रेरी के साइन बोर्ड पर लाइब्रेरी गुरुकुल स्टडी जोन लिखा हुआ है।

जिसके हर पार्ट दिख रहे हैं और गाड़ी बिल्कुल कबाड़ा है।